कुछ सामान कुछ सामग्री अनेक तरह का सामग्री रखा हुआ हे जिसको आदमी गंभीरता से देख रहा हे.

पेड के आसपास गाड़ी खड़ी है गाड़ी गाड़ी के अगल-बगल कुछ दिख रहा है.

हाथ में मुरली है चारो तरफ़ से माला है.

मुकुट लगा हुआ है साथ में राधिका जी है राधिका जी और किशोरी दोनों एक-एक हाथ से मुरली पकड़े हुए है नीचे से

क्लास चल रहा है क्लास में एक दो तीन चार पांच छे सात बच्चे बैठे हुए हैं.

एक आदमी दिख रहा है एक आदमी दिख रहा है वो डांस कर रहा है.

एक दो तीन चार मोटरसाइकिल है।

लाल पियर शर्ट पहनकर मोटरसाइकिल का हैंडल दिख रहा है शिशा दिख रहा है.

पीछे तरफ तरह का घर लाल एक पीला उजाला--

और नीचे कुछ नक्काशी किया हुआ बेडशीट है।

उसके नीचे फर्श है फश दिख रहा है.

रंगीन रंगीन सामग्री है फल फूल है फूल से पूरा आगे का चीज सजाया हुआ है बहुत अच्छा दिख रहा है.

दुकान मोबाइल का दुकान लग रहा--

ये सब सामग्री एक दूसरे के ऊपर ये पंखा हे.

किट ट्राय स्टॉप है.

गाड़ी कार उजला कार खड़ी है.

दुकान में बहुत तरह से कपड़ा पॉलिथीन में है.

रैक में कपड़ा भरा हुआ है दुकान में पॉलीथीन है.

रेक हे इधर सामने हे इधर पंखा हे इधर--

अच्छा ए-ए-एल टी एफ एफ ए लिखा हुआ है.